और उसी बिलिंग के जस्ट सामने एक कूड़े उठाने वाली गाड़ी खड़ी है और उसी के जस्ट अगल बगल दो-तीन कार खड़ी हुई हैं और उसके जस्ट बगल में एक बड़ा सा पेड़ --

और उसी स्क्रीन से सटा हुवा एक आदमी भी खड़ा हुवा है।

इस तस्वीर को देख कर ऐसा लग रहा है ये एक पेट्रोल पम्प है जहाँ पे डीजल मिलता है। ये एक कार है जहाँ पे पेट्रोल खुद डल रहा है।

नीले रंग की शर्ट पहने हुआ मास्क लगाया हुआ बच्चा झूले के ऊपर खड़ा हुआ है और एक आदमी बगल में भी है।